इस इमेज में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है | यहाँ पर और भी काफी सामान नजर आ रहा है |